पिक्चर में हम देख सकते हैं की यहाँ पे बहुत सारा घांस है उसके पीछे दीवार है आसमान है।

देख सकते है यहाँ पे रंग-बिरंगे फूल हैं सजावट वाले और जैसे की गुलाबी है नील कलर का हैं।

और यहां पर सामने भी एक फैन है दरवाज़े का कलर भूरा है और अंदर जाने के लिए दरवाज़ा थोड़ा सा खुला पड़ा हुआ है और बोर्ड लिखा हुआ है में ऑय हेल्प यू |

ये ए उनके पीछे एक मेज है कलर का जिसपर इन्हें अ विराजित किया गया है। राधा-कृष्णा के पीछे एक गोल है।

हम देख सकते हैं की यहाँ पर अंदर की और कंप्यूटर है ठीक एक अ पीले कलर का और सफ़ेद कलर का मेज है और फोर-जी का बोर्ड लगा हुआ है ठीक उसके सामने एक नीले कलर का अ बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसमें हम दिखा दे रहे है कि एक बड़ा सा ग्राउंड है यहां पर हर एक फ्रीडम फाइटर की फोटोज है।

जैसे की अ स्वामी विवेकानंद ला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अ डाक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भारत माता की फोटो है बगल में ब्लैक कलर के बोर्ड है बोर्ड

तस्वीर में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक मैदान है। मैदान में बहुत सारी सजावट की गई है। यहाँ पर नील और सफ़ेद रंग के परदे का इस्तेमाल किया गया है।

देख सकते हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर हरा है छोटे-छोटे यहाँ पर ग्लासेज के खिड़की हैं एक द्वार है और पूरा हरा कलर का --